और एक आदमी है जो टोपी लगाया और हाथ में कागज लिया है और टेबल पे बहोत सारी फाइले है लैपटॉप है।

रोड के किनारे एक छोटी छोटी दीवाल जो की व्हाइट कलर से कलर की गई है।

और दो कमरे दिख रहे है और कमरे में एक लड़का बैठा हुआ है और दोनों कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं।

ये हंस है और कुछ बकुले हैं।